कुछ बना हुआ है और ऊपर की तरफ शीशे की--

उसके पीछे एक कुर्सी रखी हुई है।

इस दृश्य में बहुत सारे पेड़ और पौधे --

यह रोड का दृश्य है।

यह एक पार्क का दृश्य है जहां पर रंग बिरंगे फूल लगे हुए हैं।

इस दृश्य में लोग बस पे चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं।

पौधे लगे हुए हैं और एक --

इस दृश्य में सामने की तरफ शीशे के अंदर--

एक आदमी ने भूरे रंग की वर्दी पहेनी हुई है।

रोड के पीछे लाल हरे लाल रंग की बिल्डिंग है।

और नीचे कालीन बिछी हुई है।

दीवाल पर मूर्तियां और पेंटिंग लगी हुई है।

यह एक दुकान का दृश्य है।

एक आदमी ठेला लेकर आ रहा है।

इस दृश्य में एक नदी दिख रही है।

जिसके पीछे बहुत ही बड़े बड़े--

इस दृश्य में सामने की तरफ जमीन पर लाल रंग का--

बहुत सारे पेड़ और पौधे लगे हुए हैं।

का है और दूसरे टंकी का नीले रंग का--

कुछ लोग नदी को पार करते हुए दूसरी तरफ जा रहे हैं।

पीले रंग का कपड़ा पहना हुआ है पीछे दीवाल की तरफ एक--

सफेद रंग का कपड़ा पहना है और पीछे की तरफ पेड़ और पौधे दिख रहे हैं।

यह रोड का दृश्य है पीछे की तरफ एक घर नजर आ रहा है।

और दोनों तरफ पिंक कलर का पर्दा लगा हुआ ह--

कुछ ने सफेद रंग का कपड़ा पहना है।

ये कुछ लिखा हुआ है और नीचे दुकान की तरफ--

छत पर सफेद रंग की लाइट नजर आ रही है।

और एक दो पोल नजर आ रहे हैं जिनका रंग लाल रंग का है।